और पीछे वाशिंग मशीन फ्रिज वगैरह लग रहे हैं।

और दो आदमी यहाँ पर कार वॉश कर रहे हैं।

यहां पर लंबी सी बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग का कलर ब्राउन और--

और पीछे में दो-तीन लड़कियाँ लड़के--

ये साड़ी बनारसी दिख रही है।

और अलग-अलग प्रकार की या साड़ी मिलती होंगी।

यह एक शहर है शहर में बादल छाए हुए हैं और गाड़ियाँ--

रखा है और पीछे में बड़ी सी बिल्ड--

लोग बैठे हुए हैं एक औरत साड़ी देख रही है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और लंबे-लंबे लाइटें भी लगे हुई हैं।

तार भी दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के और गाड़ी भी खड़ी हुई है पेड़ पौधे--

अलग-अलग प्रकार के दिख रहा है।

बहुत से लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे फैन लगे हुए हैं औरत भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में यह फ्रूट शॉप दिखाई दे रहा है।

और यह दो-तीन लड़के फोटो निकाल रहे हैं और बाकी लोग बैठकर--

कलर कलर के कपड़े रखे हुए हैं उसके इसने टोपी पहना है और हाथ में और पैर में भी।

और टेलीफोन भी दिखाई दे रहा है और बिस्तरा--

बिल्डिंग के बाहर टावर भी दिखाई दे रहा है हरे हरे।

यह एक झोपड़ी है झोपड़ी में एक आदमी कुछ तो अभी काम कर रहा है और एक आदमी--

यह इमेज एक मेले की दिखाई दे रही है और बहुत से लोग यहां पर आए है।

वगैरे चार्जर वगैरे एक पर्दा लगा हुआ है परदे के पी बाजू में स्कार--

नीचे चप्पल रखे हुए और एक बकेट भी रखा हुआ है बाजू में अलमारी दिखाई देगी।

यह एक होटल है होटल के अंदर--

यह एक रास्ता दिखाई दे रहा है बहुत सारे गाड़ियां खड़ी है।

और बहुत सारे एटो भी खड़े हैं लोग आने जाने--

यह एक हॉस्पिटल हैं हॉस्पिटल के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है।

और अपने सफ़र में जा रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

ये एक सोसाइटी दिखाई दे रही है और पुरानी भी है।

स्तंभ के आजूबाजू में कंपाउंडर बना हुआ है।

यह एक पुलिस थाना है पुलिस थाने के बाहर एक--

एक सोपे की है सोपे के पीछे में हरियाली है।

बाजू में कारखाना दिखाई दे रहा है।

बहुत से लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए है।

एक आदमी के हाथ को लगा हुआ है और पैदल जा रहा है।

सब सलाइन के बोतल बेड।